एक तरफ गाड़ी खड़ी है दूसरी तर--

लाइट्स भी यहां लगी हुई है कैमरे भी लगे हैं।

यह एक कॉलेज की बिल्डिंग है सामने--

पीछे घमले रखे हैं सामने बहुत सारे दरवाजे और खिड़कियां दिख रही हैं।

सामने प्लेट्स और मेन्यू पड़ा हुआ है नैपकिन भी रखे हैं।

ए_सी भी लगा हुआ है लाइट --

दिख रहा है यहां पर रोल पर रोटियां बनाई जा रही हैं।

आस पास और भी दुकाने यहां दिख रही हैं।

बहोत सारी तारे भी दिख रही हैं।

यहां गेट भी लगा हुआ है सामने दरवाजा और खिड़की दिख रही है।